पार्क है हिरन रखने वाला पार्क दिख रहा है और इसके चारों तरफ से जाल से घेरा हुआ है पेड़-पौधे दिख रहे है हरे-भरे है उसके बगल में घर भी दिख रहा है और यहाँ घास पर्याप्त मात्रा में हिरन चर रही है हिरन देखने में बहुत सुंदर है।

है सेलून का दुकान बहुत बढ़िया से सजावट किया गया है और यहाँ पे बाल दाढ़ी सपा एंड सैलून लिखा हुआ है और कैंची का सिम्बोल भी बना हुआ है | एक आदमी है जो अन्दर से बाल दाढ़ी कटवा के बाहर आया है | टी-शर्ट पहिने है जीन्स पहिने है और बहुत अच्छा बाल दाढ़ी काटा गया है इनका |

ये शीशे का गेट बना हुआ है ए.सी. लगा हुआ है इसके अंदर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और पेड़ का चित्र दिख रहा है शीशे पे।